और यहां दो पेंटिंग्स लगी हुई हैं।

और दुकान के ऊपर सफेद रंग से लखनऊ आटोमोटिव लिखा हुआ है।

और वहां एक पीले और काले लं रंग की लाइन बनी हुई है।

तस्वीर में एक दुकान है।

और वहां रोड बनी हुई है और रोड के किनारे पीले और काले रंग की लाइन बनी है।

और मेज पे दो लैपटॉप रखे हुए हैं।

इस तस्वीर में सामने दो लोग खड़े हुए हैं।

साइड में बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

कई पेड़ लगे हैं हरे रंग के।

यहां बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

साइड में एक स्टूल रखा है प्लास्टिक का।

नीचे बहोत सारे लोग खड़े हैं।

लाल रंग के चैनल भी लगे हुए हैं।

कुछ बैग भी रखे हुए हैं।

चार लकड़ी की कुर्सियां रखी हुई हैं।

कई सारे सफेद रंग के बल्ब लगे हुए हैं।

इस तस्वीर में हमें एक ऑफिस दिख रहा है।

यहां सफेद कलर से पेंट हुआ है।

यहां एक रेस्टोरेंट दिख रहा है।

पीछे एक दीवार है जिस पे सफेद रंग का पेंट हुआ है।

इस तस्वीर में सफेद रंग के जीने बने हुए हैं।